बहोत प्यारा दिखाई दे रहा है गुब्बारे लो और बहोत ही सुंदर में लगी हुई एक पुतला भी लगा हुआ है।

दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है कुछ एक दुकान है जिसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है कुछ ग्लासेस पड़े हुए हैं।

ऊपर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है नीचे एक बाइक खड़ी है वो दिखाई दे रही है बहुत सारे आदमी दे रहे--

मुझे सामने एक बहोत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रा है बहोत ही खूबसूरत दृश्य नजर आ रा है जिसमें--

देखने को बहुत ही खूबसूरत दृश्य मिल रहा है फोटो दिखाई दे रही है जो बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है।

बिल्डिंग की सजावट आगे से बहोत अच्छी की गई है ऊपर एक बिल्डिंग बनाई गई है।

मुझे यहां कुछ बकरियां दिखाई दे रही है बकरियां बहोत ही सुंदर दिखाई दे रही है बहुत प्यारा दृश्य देखने को मिल रहा है पीछे--

सामने मुझे एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देख रही है बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है।

बहुत प्यारा दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत खूबसूरत दृश्य है रात का माहोल है बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिल --

मुझे एक फोटो दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक गेट दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है गेट व्हाइट कलर का है।

प्लेटफॉर्म के अंदर टेबलें लगी हुई है प्लेटफॉर्म के ऊपर का छपरा दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है ट्रेन की चीजें बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है।

सामने मुझे एक बहोत बड़ी दुकान दिखाई दे रही है बहोत ही प्यारा दृश्य से देखने को मिल रहा है दुकान के अंदर बहोत ही प्यारी सुंदर सी दुकान दिखाई दे रही है।

सामने मुझे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है बहोत ही प्यारी बिल्डिंग दिख रही है उसके दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई हैं।

मुझे एक तस्वीर दिखाई दे रही है जो बहुत ही सुंदर तस्वीर दिखाई देती है जिसमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बहुत ही प्यार नजारा देखने को बहुत --

सामने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है एक बड़ा सा टेंट दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे एक खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रहे है जिसका खूबसूरत दृश्य नजर आ रहा है बहुत ही अच्छा दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है।